यह एक पुराना घर है जिसमे सभी लोग रह सकते हैं। यह रहने के लिए आरामदायक होता है। इसमे फैमिली के साथ रह सकते हैं| यह एक बहुत अच्छा घर है।

शर्मा पुस्तक भंडार यह भी एक पुस्तक भंडार है जो पतनपुर में स्थित है यह पुस्तक से यहाँ पे सारे बच्चे अपना आराम से आके कॉपी किताब ले सकते हैं।